जैसा देखा जा उधर बैठ कर लोग खंडहर में फोटो बना रहे छे वीडियो बना वे छे ब घूम रवे छे घूमने वाला जगह खंडहर छे दूर से आदमी अबे छे फोटो खींचे छे सेल्फी खीछे छे मौज मस्ती करे छे।

गणेश जी की मूर्ति बढ़िया झकास लागय छे देखे में देखा ।